मुझे एक बहुत बड़ा ग्राउंड दिख रहा है जिसमें बहुत सारे बच्चे बैठे हुए है कोई दो के ग्रुप में कोई तीन के ग्रुप में कोई चार के ग्रुप में बीचों-बीच एक कार भी दिख रही है।

मुझे बहुत बड़ी नदी दिख रही है नदी के ऊपर ब्रिज बना हुआ है ब्रिज के कुछ खंभे दिख रहे है नदी के उस तरफ हरी-भरी घास दिख रही है और इस तरफ बहुत सारा कचरा कंकड़ पत्थर फैले हुए है और एक बकरी या भैंस वगैरह चर रही है।

मुझे एक ग्राउंड दिख रहा है ग्राउंड में एक झूला टाइप का बना हुआ है हरी-भरी घांस है घांस के बीच में पानी भरा हुआ है।

मुझे एक नदी दिख रही है नदी के किनारे पर टिन से बाउंड्री की गई है एक ब्रिज उसके ऊपर ब्रिज भी बना है ब्रिज का एक पाया दिख रहा है जिस साइड मे कुछ आदमी अंदर जाते हुए दिख रहे हैं किनारे पर बहोत कंकंर पत्थर से डले दिख रहे हैं।